ये एक मैदान है। मैदान में एक लड़का लेटा हुआ है उसके सर के पास ब्लू चप्पलें रखी हैं। पेड़ लग रहे हैं।

अ एक सीढ़ियां चढ़ रहा है ऑरेंज टी-शर्ट पेहन कर ग्रीन कलर की बिल्डिंग है साइड में पीछे बड़ा-सा पेड़ है एक पिंक शर्ट पहना है।

इंडिया का झंडा लगा है। पीछे पेड़ लगा है। बिल्डिंग है ग्रीन और ऑरेंज कलर की।

बच्चा येल्लो कपडा पहना है। एक रेड साड़ी में आंटी --

द कॉफी बीन एंड टी लिखा हुआ है | अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं | ब्राउन कलर के टाइल्स लगे हैं।

यहां घर बन रहा है पीछे टावर लगा हुआ है ।

पीछे खेत है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

ये एक घर के बाहर का फोटो है जहां घर बन रहा है।